पेड़ में आधा आधा व्हाइट कलर से रंग दिया गया है।

आदमी लोग भी खड़े हैं।

यहां बहोत सारी महिला और पुरुष मिलकर गिरजाघर में पूजा कर रहे हैं।

यहां बहुत चेयर सब है।

यहां पर गेट है जो गेट ब्लैक दिखाई दे रहा है ऊपर टीना लगा हुआ है टीना के ऊपर लाइट रखा हुआ है।

मरकरी लग रही है लग रही है।

बैठे हुए हैं दो लोग एक जगह दो लोग एक जगह।

कारपेट का दुकान है घरेलू चीजों का।

रखा हुआ है मटका रखा हुआ है झाड़ू रखा हुआ है।

टोटो लगा हुआ है वो टोटो लाल कलर का है।

और बहुत सारे बाइक ऐसे लगे हुए हैं।

लाइट का प्रबंध किया हुआ है सी_सी_टी_वी कैमरे लगे हुई हैं।

यहां तीन बाइक लगा हुआ है।

ये घर बैम्बू से बना हुआ है।

बांस की लकड़ी से बना हुआ है।

घर का प्रचार भी किया जा रहा है।

दो चेयर रखा हुआ है जिसका कलर ब्लू है।

अलग अलग काउंटर में अलग अलग आथॉर की बुक रखे हुए हैं।

कंप्यूटर में आदमी काम कर रहा है।

बहुत बरा बरा पेड़ है।

उसके बाहर साइकिल रखा हुआ--

वो आपस में बात कर रहे हैं।

जंगली फूल है सामने मैदान है।

ये फूल का दुकान है।

जिसमें घर स्विप करने वाला रखा हुआ है।

ये घर के बाहर का दृश्य है जिससे बाउंड्री किया गया है।

इस जगह का नाम पानी कैंप है यहां पे टीने का घर बना हुआ है।

पानी का टैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

पर्दा लगाया है गोल्डन कलर का टी_वी है।

यहां पे तैयारी चल रही है लोग यहां पे खड़े है।

बहुत ही अच्छी चीजें इसमें मिलती है।

अंदर भी लोग बैठ के खा सकते हैं बाहर गाछ लगा हुआ है।

यहां पे एक अंकल खड़े हैं।

बहोत अच्छी तरह से सिखाया जा रहा है।

कारपेट लगा हुआ है और बहोत सुंदर लग रहा है ओ सुंदर सा तस्वीरें देखने को मिल रहा--

इसमें एक अंकल का खड़े हैं।

यहां पर बहुत सारी फुल लगी हुई है।

पिला फूल हैं लाल फूल हैं नीला फूल है।

पर्पल कलर का फूल है और एक अंकल भी हैं।

ऊपर पंखा लगा हुआ है ये टीने का रूम है।

और उनके पैरेंट्स भी आए हुए हैं सभी पार्टिसिपेट करने वाले लोग खड़े हैं।

तरबूज रखा हुआ है तरबूज बहुत ही अच्छे अच्छे तरह के हैं छोटे बड़े सब हैं।

बाहर ग्रिल लगा हुआ है।

यहां शादी हो रही है।